यहाँ कई तरह के पेड़-पौधे हैं और पेड़ पौधे हमारे लिए काफी उपयोगी हैं।

यहाँ पर एक छोटा दुकान को दिखाया गया है। यह कपड़ा का दुकान है और यहाँ कई तरह के --

लगी हुई है दुकान में छोटे से बड़े आदमी के कपड़े मिल जाते हैं दुकान में --

मिलती है यहाँ की मिठाई प्योर दूध से बनी होती है और यहाँ के मिठाई काफ़ी अच्छी टेस्टी रहती है।

ऐसा स्टेज़ बना हुआ है और यहाँ पे कई लोग आए हैं।

यहाॅं पर ये बहुत हाईवे रोड को दिखाया जा रहा है। यह रोड काफ़ी लंबी है और ये रोड --